इस दृश्य में कई सारे बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एस_बी_आई के नीचे एक योन केस का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक काफी शॉप की दुकान है।

हां यह कॉफी शॉप उन्नीस सौ उन्नचास से चला आ रहा है।

इस पूजनीय स्थल में कई सारे गुब्बारे दिख रहे हैं तथा पर्दा भी लगा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है इस रेस्टोरेंट में कई सारे लोग हैं।